उसके बाद आदमी पेट्रोल डाल रहे हैं यहां टंकी--

उसके बाद बिल्डिंग का यहां काम हो रहा हैं।

बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बहोत सारे लोग हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं उसके आगे बड़ी सी सड़क है।

बड़े बड़े दो बोर्ड है जिस पर बच्चा लोग को पढ़ाया जा रहा है।

मतलब मशीन रखा हुआ है बाल स्ट्रेट करने का बहुत सारे क्रीम रखी है फेसियल करने की परफ्यूम रखी हुई है।

यहां पे मिरर खूबसूरत खूबसूरत हैं।